मछली ल एक कक नंबर के बना-बना के खाथे सारे मन चारो बनाथे मछली के बहुत झने यासी रहु कतला--